यहां पर बड़ी बड़ी खूब सारी मशीने लगी हुई है और यहां पर लोग जिम करने--

लोग आदमी बैठा है वो चाय पी रहा है।

और नीचे कुछ फाइल पड़ी है उसमें कुछ--

लिखने पढ़ने के लिएऔर एक साइड में और भी चाय का मग्गा पड़ा है।

यहां पर बहुत बड़ा समुंदर है और यहां पर बोटिंग भी--

बहुत बड़ा पानी है यहां परऔर उस साइड भि पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे और--

रोड बने हुए हैं कच्ची सड़क है यहां पर मिट्टी के रोड हैं और यहां पर लोग आ जा रहे हैं।

यहां पर सजावट की हुई है डेकोरेशन अच्छा किया हुआ है रंग बिरंगी--

ये एक बहुत बड़ी हवेली है जिसके ऊपर खूब सारे पेड़-पौधे हैं और ये कोई---

सब खाने की चीजें है लोग लेकर जा रहे हैं।

यहां पर एक हाईवे रोड है जो कि--

घर से स्कूल आ सकें और ये --

यहां पर और यहां पर पेड़ पौधे भी बहुत लगे हुए हैं चारों तरफ से।

जो कि यहां पर लोग पैसे जमा करवाने --

यहां पर खूब सारी हरी मिर्च पड़ी है।